ब्लैक एण्ड वाइट पेड़ दिख रहे है मुझे आधे ग्रीन आधे ब्लैक और कुछ पोस्टर रखा है किसी चीज का और बेंच पे बहोत सारे कपड़े रखे हैं स्टूलस चेयर्स दिख रहे है बेग दिख रहा है।

नेट दिखाई दे रही है पेड़-पोधे दिखाई दे रहें हैं हमें यहाँ पे खिड़कियाँ गेट शटर छत सब दिखाई दे रही है यहाँ पे हमें ग्राउंड --

अलग-अलग कलर्स के ब्लू रेड ग्रीन --

का हमे अंदर एक रेफ्रिजरेटर शो हो रहा है देन हमें यहां पे काउंटर्स शो हो रहा है।